इस तस्वीर में ढेर सारी बेकरी की केक दिखाई दे रही है जो दिखने में काफी सुन्दर लग रही है।

यहां से पानी आ रहा है।

एक के पास दो तीन बोतल भी रखे हुए है जो रेड और वाइट कलर में है।

और यहां पे कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर पंखा भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर ऊपर में ढेर सारे बादल दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो काफी दूर तक दी--

एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का है और एक के ऊपर पार्लर भी लिखा हुआ है।

ढेर सारे रैक भी बनाए गए हैं और यहां पे एक मोबाइल के कवर का बैनर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कुर्सी भी रखे रखा हुआ है जिसके ऊपर तौली भी लगाया हुआ है।

यहां पे बालू भी दिखाई दे रहा है एक साइकल एक बाइक और एक कार भी दिख रहा है।

एक बन्दे ने अपने मुंह पे कोई क्रीम लगाया हुआ है उसने हेयरबैंड भी पहना हुआ है।

यहां पे एक शटर भी लगाया गया है जिसके पास फूल भी लगाया गया है मेरीगोल्ड के।